और क्रॉस का निशान भी है प्लस का निशान भी है और एक गेट भी लगा हुआ है।

एक जीवन दान है वो बड़ी सी बिल्डिंग है उसमें बहोत सारे बिजली के खंभे लगे हुए है और--

लेडिस चूड़ियां भी हैं और व्हाइट कलर की शीशियां भी रखी हुईं हैं और ब्ल्यू कलर का--

साइड में भी एक व्हाइट कलर की ये मश ये मशीन रखी हुई है और एक चेयर है उसके साथ ही एक --

इसमें तारें भी लगी हुई हैं साइड में--

हैंड बैग दिख रहे हैं और कई औरत हैंड बैग --

एक सेंटर यहां पर बच्चों की खाने की कई चीजे हैं एक बच्चा--